ये कोई जगह की फोटो दिखा रखी है और रेड कलर का कोई घर रखा है।

बाहर एक बड़ा सा पेढ़ भी है उससे तरफ एक उसके तरफ़ से बाउंड्री बना रखी है और इसमें बहुत सारी बाइक्स साइकिल एंड स्कूटी भी खड़ी है एंड इसमे--

ये कोई घर दिखा रखा है बड़ा सा घर है एंड इसमें बहोत सारे जंगले दिखा रखी हैं।

एक लडकी ब्लैक कलर की विंडो लगा राखी है एक इसके छत्त पर लाइट भी लगा रखी है और एक ओरेंज कलर का बड़ा सा पाइप भी दिखा रखा है।

ये कोई ग्राउंड दिखा रखा है एंड इसके बहुत सारे इसमे खड़े दिखा रहे है एंड इसके पीछे एक बड़ा सा टावर भी दिखा रखा है वाइट कलर का--

इसमें बहुत सारे पेड़ भी दिखा रखे है बहुत से इसमें बड़े बड़े पेड़ है।

यह कोई बड़ा सा रूम दिखा रखे है इसमें बहुत सारी अलग-अलग मशीन्स भी दिखा रखी है।

इसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए है और ये कोई रास्ता बना रखा है उस नाव जाने के लिए और सामने एक बढे से--

और सामने भी बहुत सारी ईंट भी रखी हुई है और उसमे एक दिखाई दे रहे है।

और ये बहुत सारी स्टेयर्स भी है जिनके साइड्स में आयरन रेलिंग लगा --

यह कोई शोक की फोटो है इसमें दिखा रखी है और उसमे बहोत सारे भगवान जी की फोटो दिखा रखी है जैसे गणेश जी--

राधा कृष्माण जी की है बजरंग बली जी की है माता रानी की मूर्ति है इसमें बहुत सारी मूर्ति रखी हुई है और साइड मे नकली से कप भी रखे है।

रूम दिखा रखा है इसमें जिसमें ऊपर एक लाइटिंग वाला झूमर लगा रखे है।

इसमें एक साइड में बड़ा सा बना रखा है जिसके ऊपर कुछ लिख रखा है।

है इसी साइड में एक ड्रॉवर भी है और यहां पे थ्री सिक्सटी सैलून से--

ये कोई नर्सिंग की फोटो दिखा रखी है जिसमें आयरन की पाइप्स पे ग्रीन कपड़ा लगा--

और इसमें बहुत से अलग-अलग तरह के अलग-अलग साइज़ के पेड़े रखे हुए है।

और इसके ऊपर एक येलो कलर से एक टेंट भी लगा रखा है इसके ऊपर रेड कलर से कुछ लटका रखा है और पर्पल कलर से झूमर भी बना--

ये कोई केक की फोटो इस में दिखा रखी है एंड ये कोई चॉकलेट केक दिखा रखा है जिसपे--

गलाई हुई चॉकलेट डाल रखी है एंड इसमें बिस्किट भी--

ये कोई फोटोज़ में दिखा रखी है ये कोई बड़ी सी पहाड़ी दिखा रखी है।

यह इसमें एक फोटो दिखा रखी है और इसमें पीछे ब्लू कलर ग्रीन कलर की दीवार दिख रही है।

एंड वाइट कलर की ऊपर छत है जिसमे लाइट लगी हुई और ये कोई झूमर भी लगा रहखा है एंड इसमें कोई कैमरा भी लगा रखा है।

ये दो परपल्स में दिखा रखी है इसमें वाइट कलर का फ़र्श और वाइट कलर की दिवार दिखा रखी है।

यह कोई नाईट का फुल दिखा रखा है यह कोई रोड की फोटो है जिस पर पुलिस वालो ने अपने ब्लेकर्स वाले बोर्ड लगा रखे--

के नाम और उनकी दूरियां दिखा रखी है देन इसमें बहुत सारी एक तरह से लाइटिंग दिखी हुई है।

ये कोई फोटो दिखा रही है ये दो छोटी छोटी लड़किया है इसमें एक ने ऑरेंज कलर का सूट डाला हुआ है और एक ने कुछ ड्रेस पहनी हुई है।

इसमें बहोत सारे चेयर्स भी दिखाई दे रहे हैं और इसमें बहोत सारे पेड़ भी हैं।

एंड ये एक लड़की किसी सर्किल के ऊपर खड़ी है जिसके अंदर पानी डाल रखा है।

पल्स में फोटो दिखा रही है ये किसी मोबाइल वाली की शॉप इसमे दिखा रखी है।

ये कोई स्टेशनरी की शॉप इसने दिखा रखी है और ये कोई शॉपकीपर है इस दुकान का इसमें अलग अलग तरह के एक तो बोर्ड दिखा रखे है।

इसमें हमे जगह की फोटो दिखा रखी है जहाँ सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखा रखी है।

और इसमें बहुत ट्रेडमिल्स भी दिखा रखे है।

ये उन्होंने बहुत सारी मशीन दिखा रखी है और ये कोई जीम वगेरा की --

और ये अलग-अलग तरीके के मशीन्स भी दिखा रहे है येलो मशीन है।

इसमें आयरन टिन भी लगा रखी है और इसमें ब्लू कलर की टंकी भी रखी है जिसे वाइट कलर की पाइप पास हो रही है और नीचे--

ये है कोई जिम की फोटो दिखा रही है इसमे वाइट कलर की छत दिख रही है जिसमे पूरी लाइट लगा रही है और एक फेन लगा रखा है ब्लैक कलर का --

सॉरी इसमें दो लड़के भी दिखा रखे है जो एक वो दिखा नीचे इसमे ग्रीन कलर का कुछ मेट वेगेरा बिछा रखा है --